मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
आप सभी को क्रिसमस की अनेकअनेक शुभकामनायें
आज का दिन सेवा त्याग और करुणा को अपने जीवन में महत्व देने का अवसर है
ईसा मसीह ने कहा गरीबों को हमारा उपकार नहीं हमारा स्वीकार चाहिये
सैंट ल्यूक के गोस्पेल में लिखा है जीसस ने न केवल गरीबों की सेवा की है बल्कि गरीबों के द्वारा की गयी सेवा की भी सराहना की है और यही तो असली एम्पावरमेंट है
इससे जुड़ी एक कहानी भी बहुत प्रचलित है
उस कहानी में बताया गया है कि जीसस एक टेम्पल ट्रेजरी के पास खड़े थे
कई अमीर लोग आए ढेर सारे दान दिए
उसके बाद एक ग़रीब विधवा आई और उसने दो तांबे के सिक्के डाले
एक तरह से देखा जाए दो तांबे के सिक्के कुछ मायने नहीं रखते
वहाँ खड़े भक्तों के मन में कौतुहल होना बड़ा स्वाभाविक था तब जीसस ने कहा कि उस विधवा महिला ने सबसे ज्यादा दान किया है क्योंकि औरों ने बहुत कुछ दिया लेकिन इस विधवा ने तो अपना सब कुछ दे दिया है
आज 25 दिसम्बर महामना मदन मोहन मालवीय जी की भी जयन्ती है
भारतीय जनमानस में संकल्प और आत्मविश्वास जगाने वाले मालवीय जी ने आधुनिक शिक्षा को एक नई दिशा दी
उनकी जयन्ती पर भावभीनी श्रद्धांजलि
अभी दो दिन पहले मालवीय जी की तपोभूमि बनारस में मुझे कई सारे विकास के कार्यों का शुभारम्भ करने का अवसर मिला
मैंने वाराणसी में भू में महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर का भी शिलान्यास किया है
इस पूरे क्षेत्र में निर्माण हो रहा है एक कैंसर सेंटर न सिर्फ़ पूर्वी उत्तरप्रदेश लेकिन झारखण्डबिहार तक के लोगों के लिये एक बहुत बड़ा वरदान होगा
आज भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है
ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता
उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सिर ऊपर किया
पार्टी नेता हो संसद सदस्य हो मंत्री हो या प्रधानमंत्री अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया
अटल जी के जन्मदिन पर मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ
एक कार्यकर्ता के नाते अटल जी के साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला
अनेक स्मृतियाँ आँखों के सामने उभर करके आती हैं
आज सुबहसुबह जब मैंने ट्वीट किया तो एक पुराना वीडियो भी मैंने शेयर किया है
एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में अटल जी का स्नेहवर्षा का सौभाग्य कैसा मिलता था उस वीडियो को देख करके ही पता चलेगा
आज क्रिसमस के दिन सौगात के रूप में देशवासियों को दो योजनाओं का लाभ मिलने जा रहा है
एक प्रकार से दो नवतर योजनाओं का आरम्भ हो रहा है
पूरे देश में गाँव हो या शहर हो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो कैशलेस क्या है कैशलेस कारोबार कैसे चल सकता है बिना कैश खरीदारी कैसे की जा सकती है चारों तरफ़ एक जिज्ञासा का माहौल बना है
हर कोई एकदूसरे से सीखनासमझना चाहता है
इस बात को बढ़ावा देने के लिये मोबाइल बैंकिंग को ताक़त मिले इसलिये इपेमेंट की आदत लगे इसलिये भारत सरकार ने ग्राहकों के लिये और छोटे व्यापारियों के लिये प्रोत्साहक योजना का आज से प्रारंभ हो रहा है
ग्राहकों को प्रोत्साहन करने के लिये योजना है लकी ग्राहक योजना और व्यापारियों को प्रोत्साहन करने के लिये योजना है दिगी धन व्यापार योजना
25 दिसम्बर को क्रिसमस की सौगात के रूप में पंद्रह हज़ार लोगों को द्रव सिस्टम से ईनाम मिलेगा और पंद्रह हज़ार के हरएक के खाते में एकएक हज़ार रूपये का ईनाम जाएगा और ये सिर्फ़ आज एक दिन के लिये नहीं है ये योजना आज से शुरू हो करके 100 दिन तक चलने वाली है
हर दिन पंद्रह हज़ार लोगों को एकएक हज़ार रूपये का ईनाम मिलने वाला है
100 दिन में लाखों परिवारों तक करोड़ों रुपयों की सौगात पहुँचने वाली है लेकिन ये ईनाम के हक़दार आप तब बनेंगे जब आप मोबाइल बैंकिंग इबैंकिंग रूपे कार्ड उपी यूएसएसडी ये जितने डिजिटल भुगतान के तरीक़े हैं उनका उपयोग करोगे उसी के आधार पर द्रव निकलेगा
इसके साथसाथ ऐसे ग्राहकों के लिये सप्ताह में एक दिन बड़ा द्रव होगा जिसमें ईनाम भी लाखों में होंगे और तीन महीने के बाद 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की जन्म जयन्ती है उस दिन एक बम्पर द्रव होगा जिसमें करोड़ों के ईनाम होंगे
दिगी धन व्यापार योजना प्रमुख रूप से व्यापारियों के लिये है
व्यापारी स्वयं इस योजना से जुडें और अपना कारोबार भी कैशलेस बनाने के लिए ग्राहकों को भी जोड़ें
ऐसे व्यापारियों को भी अलग़ से ईनाम दिये जाएँगे और ये ईनाम हज़ारों की तादात में हैं
व्यापारियों का अपना व्यापार भी चलेगा और ऊपर से ईनाम का अवसर भी मिलेगा
ये योजना समाज के सभी वर्गों खास करके ग़रीब एवं निम्न मध्यमवर्ग उनको केंद्र में रख करके बनायी गई है और इसलिये जो 50 रूपये से ऊपर खरीदते हैं और तीन हज़ार से कम पैसों की खरीदी करते हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा
तीन हज़ार रुपये से ज़्यादा खरीदी करने वाले को इस ईनाम का लाभ नहीं मिलेगा
ग़रीब से ग़रीब लोग भी यूएसएसडी का इस्तेमाल कर फीचर फोन साधारण फोन के माध्यम से भी सामान खरीद भी सकते हैं सामान बेच भी सकते हैं और पैसों का भुगतान भी कर सकते हैं और वे सब इस ईनाम योजना के लाभार्थी भी बन सकते हैं
ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग एईपीएस के माध्यम से खरीदबिक्री कर सकते हैं और वे भी ईनाम जीत सकते हैं
कइयों को आश्चर्य होगा भारत में आज लगभग 30 करोड़ रूपे कार्ड हैं जिसमें से 20 करोड़ ग़रीब परिवार जो जनधन खाता वाले लोग हैं उनके पास है
ये 30 करोड़ लोग तो तुरंत इस ईनामी योजना का हिस्सा बन सकते हैं
मुझे विश्वास है कि देशवासी इस व्यवस्था में रुचि लेंगे और आपके अगलबगल में जो नौजवान होंगे वो ज़रूर इन चीज़ों को जानते होंगे आप थोड़ा सा उनको पूछोगे वो बता देंगे
अरे आपके परिवार में भी 10वीं12वीं का बच्चा होगा तो वो भी भलीभाँति चीज़ आपको सिखा देगा
ये बहुत सरल है जैसे आप मोबाइल फोन से WhatsApp भेजते हैं न उतना ही सरल है
मेरे प्यारे देशवासियो मुझे ये जान करके ख़ुशी होती है कि देश में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना इपेमेंट कैसे करना ओनलाइन पेमेंट कैसे करना इसकी जागरूकता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है
पिछले कुछ ही दिनों में कैशलेस कारोबार बिना नगद का कारोबार 200 से 300 प्रतिशत बढ़ा है
इसको बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है
ये फैसला कितना बड़ा है इसका अंदाज़ तो व्यापारी बहुत अच्छी तरह लगा सकते हैं
जो व्यापारी डिजिटल लेनदेन करेंगे अपने कारोबार में नगद के बज़ाय ओनलाइन पेमेंट की पद्धति विकसित करेंगे ऐसे व्यापारियों को इनकम टैक्स में छूट दे दी गई है
मैं देश के सभी राज्यों को भी बधाई देता हूँ
यूनियन टेरिटरी को भी बधाई देता हूँ
सबने अपनेअपने प्रकार से इस अभियान को आगे बढ़ाया है
आंध्र के मुख्यमंत्री श्रीमान् चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में एक कमिटी भी बनाई है जो इसके लिये अनेक योजनाओं पर विचार कर रही है लेकिन मैंने देखा कि सरकारों ने भी अपने तरीक़े से कई योजनाएँ लागू की है आरंभ की है
किसी ने मुझे बताया की असम सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स और व्यापार लाइसेंस फी का डिजिटल भुगतान करने पर 10 फ़ीसदी छूट देने का निर्णय किया है
ग्रामीण बैंको के ब्रांच अपने 75 उपभोक्ता से जनवरी से मार्च के बीच कम से कम दो डिजिटल ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो उन्हें सरकार की ओर से 50 हज़ार रूपये ईनाम मिलने वाले हैं
31 मार्च 2017 तक अगर 100 डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले गाँवों को सरकार की ओर से उत्तम पंचायत फोर डिजिट्रांजैक्शन के तहत 5 लाख रुपये का ईनाम देने की उन्होंने घोषणा की है
उन्होंने किसानों के लिये डिजिटल कृषक शिरोमणि असम सरकार ने ऐसे पहले 10 किसानों को 5 हज़ार रुपया ईनाम देने का निर्णय किया है जो बीज और खाद की ख़रीद के लिए पूरी तरह डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करते हैं
मैं असम सरकार को बधाई देता हूँ लेकिन इस प्रकार से इनिशिएटिव लिये सभी सरकारों को बधाई देता हूँ
कई आर्गेनाइजेशंस ने भी गाँव ग़रीब किसानों के बीच डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के कई सफल प्रयोग किये हैं
मुझे किसी ने बताया जीएनएफसी गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर और केमिकल लिमिटेड जो मुख्यतः खाद का काम करता है उन्होंने किसानों को सुविधा हो इसलिये एक हज़ार पोज मशीन खाद जहाँ बेचते हैं वहाँ लगाए हैं और कुछ ही दिनों में 35 हज़ार किसानों को 5 लाख खाद के बोरे डिजिटल भुगतान के माध्यम से कर दिये और ये सब सिर्फ दो हफ्ते में किया है
और मज़ा यह है कि पिछले वर्ष की तुलना में जीएनएफसी की खाद की बिक्री में 27 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है
भाइयोबहनो हमारी अर्थव्यवस्था में हमारी जीवन व्यवस्था में इन्फॉर्मल सेक्टर बहुत बढ़ा है और ज्यादातर इन लोगों का मज़दूरी का पैसा काम का पैसा या पगार नग़द में दिया जाता है कैश में सैलरी दी जाती है और हमें पता है उसके कारण मजदूरों का शोषण भी होता है
100 रूपए मिलने चाहिये तो 80 मिलते हैं 80 मिलने चाहिये तो 50 मिलते हैं और इंश्योरेंस जैसे हेल्थ सेक्टर की दृष्टि से अन्य कई सुविधाएँ होती हैं उससे वो वंचित रह जाते हैं लेकिन अब कैशलेस पेमेंट हो रहा है
सीधा पैसा बैंक में जमा हो रहा है
एक प्रकार से इन्फॉर्मल सेक्टर फॉर्मल कन्वर्ट होता जा रहा है शोषण बंद हो रहा है कट देना पड़ता था वो कट भी अब बंद हो रहा है और मज़दूर को कारीगर को ऐसे ग़रीब व्यक्ति को पूरे पैसे मिलना संभव हुआ है
साथसाथ अन्य जो लाभ मिलते हैं वे लाभ का भी वो हक़दार बन रहा है
हमारा देश तो सर्वाधिक युवाओं वाला देश है
टेक्नोलॉजी हमें सहज़ साध्य है
भारत जैसे देश ने तो इस क्षेत्र में सबसे आगे होना चाहिये
हमारे नौजवानों ने स्टार्टअप से काफ़ी प्रगति की है
ये डिजिटल मूवमेंट एक सुनहरा अवसर है हमारे नौजवान नयेनये आईडीईए के साथ नयीनयी टेक्नोलॉजी के साथ नयीनयी पद्धति के साथ इस क्षेत्र को जितना बल दे सकते हैं देना चाहिये लेकिन देश को काले धन से भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के अभियान में पूरी ताक़त से हमें जुड़ना चाहिये
मेरे प्यारे देशवासियो मैं हर महीने मन की बात के पहले लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप मुझे अपने सुझाव दीजिये अपने विचार बताइए और हज़ारों की तादाद में माइगोव पर और NarendraModiApp पर इस बार जो सुझाव आये मैं कह सकता हूँ 8090 प्रतिशत सुझाव भ्रष्टाचार और काले धन के ख़िलाफ़ की लड़ाई के संबंध में आये नोटबंदी की चर्चा आयी
इन सारी चीज़ों को जब मैंने देखा तो मैं मोटेमोटे तौर पर कह सकता हूँ कि मैं उसको तीन भागों में विभाजित करता हूँ
कुछ लोगों ने जो मुझे लिखा है उसमें नागरिकों को कैसीकैसी कठिनाइयाँ हो रही है कैसी असुविधायें हो रही हैं
इसके संबंध में विस्तार से लिखा है
लिखने वालों का दूसरा तबक़ा वो है जिन्होंने ज्यादातर उन बातों पर बल दिया है कि इतना अच्छा काम देश की भलाई का काम इतना पवित्र काम लेकिन उसके बावजूद भी कहाँकहाँ कैसीकैसी धांधली हो रही है किस प्रकार से बेईमानी के नयेनये रास्ते खोज़े जा रहे हैं इसका भी ज़िक्र लोगों ने किया है
और तीसरा वो तबक़ा है जिन्होंने जो हुआ है उसका तो समर्थन किया है लेकिन साथसाथ ये लड़ाई आगे बढ़नी चाहिये
भ्रष्टाचार काला धन पूर्णतः नष्ट होना चाहिये इसके लिए और कठोर कदम उठाने चाहिये तो उठाने चाहिये ऐसा बड़ा ही बल दे करके लिखने वाले लोग भी हैं
मैं देशवासियों का आभारी हूँ कि इतनी सारी चिट्ठियाँ लिख करके मुझे आपने मदद की है

जूनियर हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप पर कब्ज़ा कर लियाआई पंद्रह साल के बाद ये मौका आया है जब जूनियर हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप जीताआई इस उपलब्धि के लिये नौजवान खिलाड़ियों को बहुतबहुत बधाई
ये उपलब्धि भारतीय हॉकी टीम के भविष्य के लिये शुभ संकेत हैआई पिछले महीने हमारी महिला खिलाड़ियों ने भी कमाल करके दिखायाआई भारत की महिला हॉकी टीम ने एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीती और अभीअभी कुछ ही दिन पहले अंडर 18 एएसआईए कप भारत की महिला हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल हासिल कियाआई मैं क्रिकेट और हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को ह्रदय से बहुतबहुत अभिनन्दन करता हूँआई
मेरे प्यारे देशवासियो 2017 का वर्ष नई उमंग और उत्साह का वर्ष बने आपके सारे संकल्प सिद्ध हों विकास की नई ऊँचाइयों को हम पार करेंआई सुख चैन की ज़िन्दगी जीने के लिए ग़रीब से ग़रीब को अवसर मिले ऐसा हमारा 2017 का वर्ष रहेआई 2017 के वर्ष के लिये मेरी तरफ से सभी देशवासियों को अनेकअनेक शुभकामनायेंआई बहुतबहुत धन्यवादI